और बहुत ही शानदार अच्छे से सादे सदे ड्रेस में दिख रहे हैं।

ये दिखने में पूरा ब्राइट है क्लीन नजर आता है एक इंटरटेनमेंट प्रोग्राम की व्यवस्था हो सकती --

और एक टेबल पे इसे रखा गया है इसके कलर पिंक येलो है इसमें वरुण इन्डिकेट किया गया है और हैप्पी बर्थडे --

अम जाँच कर रहे हैं क्या चैलेंज है।

साथ ही साथ सारे बैग के अलावा बहोत सारे आइटम इसमें है और सुसज्जित तरीके से दिखाई दे रहा --

और भी ये लाल कलर के हैं साथ ही साथ ब्ल --